इत्यादि है जैसे प एक धानिस्ट पॉपकॉर्न की दुकान है जहाँ पर बहुत सारे लोग पॉपकॉर्न खरीदने के लिए खड़े हैं।

यह गेट है जो लगता है मुंगेर का गेट है मुंगेर गेट यानी मुंगेर किला जो मुरसिद मुरसिद कुली खां ने इसकी स्थापना की थी।

ज्वेलरी मिलता है सामने एक बाइक उम फो चार चक्के लगे हैं एक आदमी खड़े हैं रोड पर और आ सामने बहुत बड़ा मैदान जैसा दिख रहा है।